यह एक फिटनेस जिम हैजहां पर एक लड़का अपने बॉडी का फोटो ले रहा है।

बहुत सारे सामान हैं बच्चों के भी हगीज रखे गए हैं दुकान के साइड में ब्रश भी रखा गया है।

यह एक जंगल के बीच बसा हुआ बहुत अच्छा घर है जिसके चारों तरफ बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

घर के बाहर घास से बहुत अच्छी कारीगरी करते हुए जय जगन बव लिखा हुआ है।

बच्चे के पैर में एक सैंडल भी है बच्चे के पीछे एक दीवार भी है।

अभी इन डब्बो में अंगूठियां रखी हुई हैं।

साइड मे चार कुर्सी भी रखी हुई है।

टी_वी के नीचे रिमोट रखने के लिए एक रैक बनाया गया है। तथा टी_वी में वायर भी लगी हुई है।

खिलौनो को कांच द्वारा सुरक्षित रखा हुआ है दुकान मे बहुत अच्छी लाइटिंग व्यवस्था भी की गई है।

साइड में बच्चों के खेलने के बहुत सारे खिलौने हैं जैसे बाइक हवाई जहाज कार इत्यादि।

सभी लोग घूमने के लिए आए हैं और दशहरा का आनंद ले रहे हैं।

ऑफिस के साइड में एक ऑटो भी खड़ी है।

उसके बगल में एयरटेल फोर जी का सर्विस सेंटर भी है। दुकान के आगे सात आदमी दिखाई दे रहे हैं।

हरे रंग के दीवाल पर लिखा हुआ है इधर उधर गंदगी न फैलावे।

चर्च के पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ है।